अम्म एक्सरसाइज जिम करने बॉडी वगैरहबनाने आ --.

गेम का मैदान है।

ये एक स्विमिंग पूल है।

यह रेस्टोरेंट है। यहाँ सवारी वगैरह--